एक इसको लेडिस में बहोत सारी मे--

और लाल कलर का दरवाजा है दो व्यक्ति खिड़की से झांक रहें हैं।

उसकी कमीज का कलर नीला है और एक दो जाने खड़े हैं।

पांच व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने लाल रंग की टोपी पहन रखी है हरे और सफेद रंग के गुब्बारे हैं और लाल कलर के।

एक पार्क है जिसमें नीले रंग के झोला लगा हुआ है और पास में एक बिल्डिंग है जिसका क्रीम कलर --

एक पार्क है जिसका अंदर हरे रंग के पौधे लगे हुए हैं और एक बच्चा खेल रहा है।

ये एक कपूर ब्रदर्स लिखा हुआ है लाल कलर का और नीले कलर का कपूर एंड संस लिखा हुआ है अंदर --

पास में दीवाल का कलर नीला है।

ताजमहल जैसे बिल्डिंग है जिसका कलर लाल है लोग बैठे हैं एक व्यक्ति कपड़ों कलर सफेद है।

खंबा है जिसका कलर स सलेटी है और खिड़की है जिसका कलर सफेद और काला है।

एक व्यक्ति है जिसके कपड़ों का कलर लाल और नीला है आसमान कलर आसमानी और सफेद है।